यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ बहु पेड़ लगे हुए हैं और आसपास बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और यह सुंदर दिखाई दे रहा है।